ब्लू कलर का और बहुत नदी में बांस लगा हुआ है और उसमें आदमी है।

येल्लो कलर का पिंक कलर का भी लाइट है एक सीढ़ी है एक कर्टन है पिंक कलर में और --

औरेंज कलर का टी शर्ट है रेड कलर का टी शर्ट है।

ऊपर में ब्लू कलर का व्हाइट कलर का साथ में रखा हुआ है टी शर्ट और एक पिक्चर है।

दो गेट है ऊपर में रेड कलर का बैनर लगा हुआ है।

उसके हाथ में एक बोतल है एक दीवाल है ग्रीन कलर का पेड़ है ग्रीन कलर का--

एक टेबल है एक आदमी खड़ा है वो व्हाईट कलर का शर्ट पहना है।